यहां पे आप देख सकते हो एस_बी_आई ए_टी_एम लिखा हुआ हैं।

रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी लिखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो--

वो सामने वाला घर दिख रहा है उस पर पानी की टंकी रखी है।

टमाटर रखे हुए हैं बताओ रखे हुए हैं। यहां पे देख सकते हो आप यहां पे--

और ये मिट्टी खोद रखी हैं यहां पे देख सक--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

यहां पे आप देख सकते है।

और यहां पे ये खंबे देख रहे हैं और ऊपर आसमान देख रहा है।

यहां पे ये बैठने की जगह--

यहां पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

और पीछे आप देख सकते हो आसमान दिख रहा है।

यहां पे आप देख सकते हो ये लेडिस खड़ी हुई है चुनरियों का रंग--

शादी के लिए सजा रखा है।

बैग रखे हुएं हैं लाइट दिखे रखी र लाइट दिख रखी हैं।

यहां पे लाइट ही लाइट लगी हुई है और यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं और यहां पे ये एक औरत हैं और यहां पे यहां देख सकते हैं।

मीनाक्षी क्यों लिखा हुआ है।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

और यहां पे आप देख सकते हो।